काफी साफ सुथरा रेस्टोरेंट डला हुआ है यहाँ पे काफी शांति भी है ये देखिये यहाँ पे चे टेबल चेयर वगेरह लगे हुए है लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए आते है देखिये कव बकायदा बहोत साफ सफाई से है यहाँ पे --

नदी किनारे की फोटो आप देख सकते हैनदी काफी चौड़ी काफी बड़ी नदी है ये देखिये यहाँ पे साइड में खेत वगेरा भी है जहाँ पे ये कुछ घास वगेरा सी लगी हुई है और ये देखिये यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हुआ है कफी बढ़े पत्थर है ये--

ये देखिए यहाँ पर किसी का घर होगा घर के बाहर उनके बॉउन्ड्री बनी हुई है ये यहाँ पे एंट्री गेट लगा हुआ हैं यही से लोग अंदर जाते हैं इस घर के--

अ प्रोडक्ट है जो अ क्रीम वगेरा यहाँ पे रखी हुई है और ये स्टोर कहां पे है ये है छत्तीसगढ़ मे स्थित --